घाघंटी बस भी आधे-आधे घंड़े पर नी --

यह शादी का माहोल है यहाँ बोहोत सारे आदमी यहाँ बोहोत सारे गेस्ट आये होंगे यहाँ तरह-तरह के पकवान बने होंगे और यहाँ यह देखने में अच्छा लग रहा यहाँ ऊपर में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है यहाँ टेबल भी लगा हुआ है।

यहां किसी का जन्म दिन है यहां तीन लोग है।